हमें यहां पर एक शॉप दिख रही है जिसका नाम है द सिटी कैफे व्हाइट कलर से लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड है ब्लैक और यहां पर कई सारे लोग खड़े हुए है जिन्होंने अलग-अलग --

वे अलग अलग कलर के कपडे पेहने हुये हे कुछ बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हे और यहाँ पर एक सर भी बैठे हुए जो की चेयर पे बैठे हुए हे और यहाँ पर महे बैनर भी दिख रहे हे जो की महे अलग अलग कलर के नजर आ रहे हे

हमें यहां पर ए_टी_एम नजर आ रहा है जो की रेड कलर का है। और हमें उसके यहां पर एक गेट भी दिख रहा है जो की ब्लैक कलर का है उसका गिलास भी लगे हुए हैं और उसके आसपास में व्हाइट बिल्डिंग नजर आ रही है।